इधर पर चार लोग दो लड़की दो लड़के स्टेज पर डांस कर रहे हैं। इधर पर साड़ी पहने और कुर्ते पह --

यहाँ एक खाली रूम है। जहाँ पर तीन चार पांच बच्चे बैठे हुए है। कुछ चार्ट पेपर मे बना रहे हैं और कुछ अपने कॉपियो मे बना रहे हैं और ये --

यह एक किसी चीज़ का ऑफिस लग रहा है जिसमें दो कंप्यूटर एक एल.ई.डी. कैमरे वाली लगी हुई है और जो अभी-अभी ओपनिंग हुई है न्यू न्यू और इधर पर चारों तरफ गुब्बारें लगे हुए हैं।

इधर पर एक ऑटो भी खड़ी है जिसमें डीजल भरल भर रहा है और एक गाड़ी भी खड़ी है और एक गाड़ी जा रही है जिसमें डीज प पेट्रोल भरवाना है।

इनके कपड़े गोल्डन कलर के दिख रहे हैं जो कि पीले होते हैं और ये पूरे ब्लैक कलर के पत्थर से बने हुए हैं।

जो कि देखने में काफी प्यारे लग रहे है और इनकी टोपियों पे कुछ कांटेदार निकले हुए जो जो इनकी टोपी भी अच्छी लग रही हैं।

यह एक साईक सैनिक साइकल मार्ट है जहाँ पर ई-रिक्शें किराए पर मिलते है और नए नए ई-रिक्शें इधर पर बेचे जाते हैं जहाँ पर ई-रिक्शा --

यह एक मुसलमान का मस्जिद है जिसका नाम मर जाग जमा व व ज़िद जालौन है इधर पर य सभी मुसलमान आते है नमाज़ पढ़ने के लिए इधर पर --